के साइड में एक और रोड दिखाई दे रही है जिसके ऊपर टावर है और यहाँ रोड पे कुछ आदमी खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

कुर्सियों के ऊपर सफेद रंग का कपड़ा पड़ा हुआ है और लाल रंग की पट्टी लगी है।

सेल्फी ले रही हैं और एक लड़की ने हाथ में फ़ोन पकड़ा हुआ है पीछे एक कैफ़े है।

बोर्ड पीछे बैनर लगा हुआ है उसमें एक --

टेबल के ऊपर जग भी रखा है और ऊपर एक --

प्रोजेक्टर लगा हुआ है जो जिससे स्क्रीन पर पिक्चर दिखती है।

सामने डिस सामने डिस्प्ले में एक लड़की की फोटो लगी हुई है डिस्प्ले में काफी ढेर सारे सामान हैं।

फिर उसके आगे थोड़ी सी छोटी-छोटी पेड़ झाड़ियां टाइप में और उसके आगे जीने है जो कीचड़ के ऊपर जाया जाता है ।

कुर्सियां लगी हुई है कुर्सियों के आगे --

पीछे नीले कलर का पर्दा लगा हुआ है जो की टेंट के जैसे है।